बहुत ही प्यारी-प्यारी मिठाइयां हैं। मिस यू मिठाई ।

ये समय-समय पर जिन्हे बस स्टॉप --

जंगलों में तमाम तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं ।

जड़ी बुटयो का हमारे जीवन में बहोत ही बड़ा योगदान है।

बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। इसमें लोग फ्लैट लेकर अपने अपने फ्लैटों में रहते हैं।

और यह फायदेमंद बोहोत होते हैं और अच्छा लगता है।

यहाँ पर मशीन द्वारा जमीन के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है।